यहां बहोत सारे व्हीकल्स दिखाई दे रहे है।

यह दृश्य हमें काफी सुंदर दिखाई दे रहा है।

यहां पर बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे बिंदी के पैकेटस है।